साइड में बाउंड्री किया हुआ है कुछ सीमेंट और ईट से और कुछ लोहे से--

बगल में एक कच्ची रास्ते भी गुजरे हुए है जिसपे कुछ कचड़े गिरे हुए है।

प बहुत सारा पेड़ पौधा भी दिखाई पड़ रहा है।

और नीचे सारे बलूंस भी लगाए हुए हैं।

व्हाइट कलर का लकड़ी लगाया हुआ है।

इस दृश्य में बहुत सारी मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं।

ऊपर मे चुका दिखाई पड़ रहा है जोकि भूरे रंग का है और--

बगल में पेड़ है जोकि हरे रंग का दिखाई पड़ रहा है साइड में ऊपर से कुछ तार खींचे गये हैं बगल में एक बांस भी गाड़ा हुआ है।

जिन्होंने अपने हाथ में बांसुरी ली हुई है।

कुछ नल व्हाइट कलर के प्लास्टिक के दिखाई दे रहे हैं और कुछ नल स्टील के दिखाई पड़ रहे हैं।

एक बस का कलर रेड और क्रीम कलर का है एक बस का कलर व्हाइट और रेड है।

इस दृश्य मे दो प्लेट रखें हुए जो की सफेद रंग की दिखाई पड़ रही है एक प्लेट में एक नान रखा हुआ है दूसरा प्लेट में सब्जियां रखी हुई है साइड में--

इस दृश्य मैं एक बोर्ड को खड़ा किया गया है।

सामने रोड पे एक बाइक गुजर रहा है जिसपे एक आदमी भी है।

पीछे की ओर बहोत सारे चेयर्स लगाई है जिस पे--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

जलेबी का रंग पीला दिखाई पड़ रहा है ट्रे का रंग सिल्वर दिखाई पड़ रहा है।

इस दृश्य में एक कार दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लू रंग का है।

बगल में एक ब्लू रंग का डब्बा रखा हुआ है।

वो एक दरवाजा है जो कि भूरे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

एक कबड में बहोत सारा साबुन एक कबड में टोस्ट वगैरा रखे हुए हैं।

नीचे के कपबोर्ड का कलर व्हाइट दिखाई पड़ रहा है।